पीछे आसमान भी दिख रहा है और पेट्रोल पंप भी बने हुए हैं सामने एक ऑफिस भी दिख रहा है पेट्रोल पंप का--

ये काफी अच्छा फोटो लग रहा है मेरे को जो बोहत ही बिंदास लग रहा है।

इमेज भी दिख रहा हैं जो बहोत ही बिंदास लग रहा हैं और देखने में भी बहोत बढ़िया लग रहा हैं और सामने एक प्रतिमा भी दिखाई दे रही हैं और बगल में एक आदमी भी खड़ा हुआ हैं।

इमेज भी बोहोत बढ़िया लग रहा है जो काफी शानदार दिख रहा है ये किसी पार्क का लग रहा हैं।